मूर्ति का मुंह भी ढका हुआ हैं नीचे में बहुत सारे आदमी बेठे हुए हैं कुछ कंबल ओढ़े हैं कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं।

चरक कलर का अपाचे और ब्लैक कलर का स्कूटी लगा हुआ है।

पीला कलर का है कोई आदमी उसमे बैठा हुआ चला रहा है यहां पर नीचे में पानी भी दिखाई दे रही है।

ये काउंटर पर है काउंटर को सफेद कलर से बनाया गया है अंदर में दीवार को भी सफेद कलर से पेंट किया गया है अंदर में बहुत सारी लाइट लगाया गया है तार खींचे गए हैं।

एक बगीचा का दृश्य है यहां पे हरा कलर से पाइप से एक लेडिस पानी पटा रही है।

यहां पे बहोत सारे हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं बगल में एक बहुत सारे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जोकि सफेद कलर का है।

ऊपर में रंग बिरंगे दो लाइट लगाएं गए हैं एक लाल और एक चरक लाइट लगाया गया है ऊपर में करकट लगाए गए हैं पाइप लगाए गए हैं।

सामने वाला तीन ताला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पर कपड़ा टांगे हुए हैं करकट लगाए गए हैं।

बगल में दरवाजा दिखाई दे रहे हैं परदे लगाए गए हैं यहाँ पे तीन लड़की दिखाई दे रहे हैं जोकि अभी योगा कर रहे हैं।

सामने एक आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहा है जो की लाल कलर का लिया हुआ है।

बगल में एक कैमरा लगा हुआ है काउंटर शीशे से बना हुआ है बगल में और भी सामान लगाए गए हैं।

यहां पे बहुत सारे लोगों का सामान रखा गया है लगाया गया ऊपर नीचे और यहां पे लोहे को पीला कलर से पेंट किया गया है जाली बनाया गया है।

सामने एक मंदिर दिखाई दे रही जो की सफेद कलर का पेंट किया गया है ऊपर मे हारा कलर से पेंट किया गया ऊपर में लाइट लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं दो तीन आदमी कुर्सी पर बैठे हुए और दो तीन दिन खड़े हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं यहां पे प्रार्थना समय का दृश्य है।

दोनों तरफ अगल बगल में लाल कलर की पोस्टर लगा हुआ है जो कि कुछ इस पर लिखा हुआ है।

सामने ये घर दिखाई दे रही है जोकि होटल लग रही है यहां पे बहुत सारे बाहर में कुर्सी लगे हुए है लाल कलर की।

रोड पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं सामने एक काला कपड़ा पहनकर टोपी उल्टा लगाकर के आदमी बाइक पर बैठा हुआ है बगल में एक और आदमी दिखाई दे रहा है।